बनी और दीवार टीन का है कलर किया हुआ है ब्लू ।

सोफा व्हाइट कलर का है चेयर सुनहरा कलर का है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है सजावट।

घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है इसके बगल में एक बहुत बड़ा लोहा का रे कुछ बना हुआ है जो की बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत सारा डिब्बा ही है।

बहुत सारा बकरी है जो कि बहुत ही ज्‍यादा सुन्‍दर लग रहा है व्हाइट कलर का है ब्लैक कलर का है चॉकलेटी कलर का है बहुत सारा जंगल है जो कि बहुत अच्‍छा लग रहा है देखने मे।